किसी फंक्शन का ये फोटो है जहा पे अ पीछे साइड पे डेकोरेशन किया हुआ दिखाई दे रहा है डेकोरेशन मे येलो पिंक कलर का यूज़ किया गया है।

जिसमें रेड कलर की पट्टी है। फ्लॉवर्स से इस स्टेज को डेकोरेट किया गया है। पर्दे लगे हुए हैं रेड येल्लो व्हाइट कलर के।

प्लेट रखी हुई है प्लेट के ऊपर दो चटनियाँ रखी हुई है| एक रेड है एक ग्रीन है और इसके साथ ही चाट बगैरह रखी हुई है और ब्लैक कलर की है प्लेट ।

और जितना पुल बना हुआ है उसके ऊपर लोहे की रोड वगहरा लगी हुई है।

और ज जो स्तंभ है वो व्हाइट कलर के हैं और मंदिर रेड कलर का ऊपर गुंबद उ गोल्डन है।

और टेबल पर लेटाया हुआ है इंजेक्शन टेबल पर है और डॉक्टर जो है वो डॉग का इलाज कर रहे हैं।